सामने बहुत सारे पेड़ बड़े-बड़े है जो हरे-भरे है. और छोटी-छोटी पत्तिया है जो हरे रंग की है।

एक बड़ा-सा पुल है जो ऊपर लोहा लगा हुआ है नीचे के साइड पे कुछ लोहे लगाई गए है भूरे रंग की रोड है और बहोत सारे लार्ड भी लगाई गए है।

भगवान की मूर्ति है जो कत्थे रंग की है सामने एक बड़ा-सा दरवाजा जो कत्थे रंग का है ऊपर छत है जो क्रीम कलर का और सफ़ेद रंग का है ट्यूब लाइट लगाई गयी है जो शफेद रंग की ट्यूब लाइट है और--

बगल में एक बड़ा -सा बिल्डिंग है जिस पे कांच लगाई गई है बालकनी में और सीढ़ी उतारने के लिए दिया गया सामने तीन टेंट लगाए गए हैं जो सफेद रंग का--

--ने एक बड़ा-सा मंदिर है जो कत्थे रंग का है ऊपर गुम्बज बना हुआ है गोल्डन कलर का सामने एक बड़ा सा गेट है अगल-बगल पर्दे है जो सफेद रंग की है।

सामने एक बढ़ा-सा पर्दा है बिच मे गेट लगाई गयी है जो भुरे रंग की गेट है अगल-बगल पेड़-पौधे लगाए गए है जो हरे-भरे हुए है छोटे-छोटे पत्ते है।

एक आदमी मोबाइल से बात कर रहा है बैठा हुआ है एक आदमी खड़ा हुआ है जो मास्क लगाए हुवे है ऊपर पे तीन लाइट लगी हुई है सामने एक मिठाई का दुकान है जो कुछ मिठाई रखी हुई ही काउंटर के अंदर।

सफेद और नीले रंग का आसमान है सामने एक स्पाईड पे छोटे-छोटे घर बनाये गए है जो सफेद रंग की है और कुछ भूरे और सफेद के बगल में भी बिल्डिंग है जो सफेद और भूरे रंग की है।

कुछ छोटे-छोटे बच्चे डांस कर रहे है एक मैडम है जो डांस सीखा रही है एक लेडीज बैठी हुई है जो ब्लू कलर की और सफ़ेद रंग का दुपट्टा पहनी हुई है।

जो क्रीम कलर का बार-- ऐ बग़ल मे भी एक बड़ा-सा ऐ तम्बू जैसा बना हुआ है जो लाल रंग की है सामने एक साइड पे बहोत सारे हरे-भरे पेड़ लगाए गए है जो हरी पत्ति--

पीछे टाइल्स लगाई गयी है जो सफेद रंग की है और कुछ भूरे रंग की है उस पे भी कुछ छोटे -छोटे खम्बे खड़े हुए है जो स्टील का है और सामने एक कुछ बोर्ड पे लिखा गया सफेद रंग से--